यहाँ सब बच्चा खेल रहा है मतलब मे है ।

बहुत सा आदमी है इस जगह मेला में बच्चा सभी है मेला घूमने गया है ।

घर में है और एकसरसाइज हो रहा है इस घर मे बहुत सारा लड़की है ।

पूजा करने के लिए और सब --

दुकान इसके अगल बगल मे नही है पेड़ पौधा एक जगह बहुत है ।

पूल बहुत बड़ा है आदमी सब है बहुत फोटो - वोटो खिचे है पानी में ।

बहुत सारा साथ मे फोटो खिचवा रहा है ।

बहुत यहाँ मतलब दुकान है मतलब इस का अगल-बगल मे होल है ।

बहुत सारा मतलब आदमी सब बेठेगा इस जगह पंखा उंखा है।

यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय स्टेट बैंक मतलब पैसा उसा --

सारा आदमी सब मतलब बोर्ड लगा हुआ है पहाड़ पे --

स्टेट बैंक हैं ।

साड़ी इस दुकान मे रखा हुआ है और --

पानी भी ज्यादा गहरा ने है जो कि बहोत बड़ा जंगल है है बहुत सारा एशिया का और --